मॉल दिख रहा है मॉल मे ऊपर बहोत सारी लाइट्स लगी हुई है।

यहां सामने बहोत बड़ा सा खेत है।

अअलोहे के रेलिंग बने हुए हैं।

और साइड- साइड में बहुत सारे लंबे-लंबे पेड़ हैं।

छत पे खड़े हैं और सीमेंट से--

और दुकान में ऊपर लाइट्स लगी हुई है ए_सी लगा हुआ है।

यहां सामने मुझे बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं।

लोहे के शटर दिख रही है सारे दुकान के अलग अलग--

और काउंटर बने हुए काउंटर पे कुछ लोग खड़े ऑर्डर दे रहे--

इसको कलरफुल बहोत सारे लाइट से बल्ब सेडेकोरेशन किया हुआ है।

और चेयर रखे हुए डाइनिंग टेबल पे टिशू पेपर --

घर है अअघर नहीं है मस्जिद जैसा दिख रहा है अंदर बड़ा फैन लगा हुआ है।

और बाहर पर बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं खंबे लगे हुए हैं जिनमें वायर लगे हुए हैं।

गार्डन में एक अ डस्टबिन रखा हुआ है ब्लू कलर का--

यहां सामने बहोत बड़ा सा रूम दिख रहा है क्लासरूम है।

और खिड़की बनी हुई है सामने कैमरे लगे हुए हैं।

और बाइक रखी हुई है एक आदमी खड़ा है जो कैप लगाया है।

काउंटर पे कुछ सामान रखे हुए हैं।

बिजली के खंबे दिख रहे हैं बहुत सारे वायर्स लगे हुए हैं खंबों से--

और येलो से सड़क पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कचड़ा पड़ा है रोड --

लाइट्स लगा हुआ है फैन लगा हुआ है।

और वॉल पे एक वॉच दिक वॉच घड़ी टंगी हुई है।

सामने मुझे अअए_टी_एम दिख रहा है।

और बहुत सारी मशीनें रखी हैं पेट्रोल डालने वाली--

जिन्हें हम साग कहते हैं।

और उस प्लेट के अंदर बहुत सारी रेड-रेड कलर की लीची रखी हुई है।

इन जो प हसुआ लेके मच्छी को काट रहे हैं।

और वॉल पे पोस्टर चिपके हुए हैं।

और बहुत सारी चेयर रखी हुई है।

और उसमें कान के झुमके हैं।